और आगे एक स्कूटी पे बैठे--

यह एक लॉज जैसा दिखाई दे रहा है।

जो बंबू से बनाया गया है।

यह एक छोटी सी दुकान है।

बिल्डिंग को फूलों से सजाया गया है।

यहां एक बहोत विशाल बिल्डिंग दिखाया गया है।

जहां शर्ट और पेंट पाई जाती है।

उसके साइड पे एक बिल्डिंग है जो सफेद कलर में है।

साइड पे एक हवलदार कमर में हाथ पकड़े उन्हें देख रहा है।

वो बहुत सारे पत्ते तरह तरह के हैं।

इस पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाया गया है।